सामने मे एक मंदिर है। आजू बाजू मे उसके बिल्डिंग है। यहाँ पर बोहोत सारे लाइट --

यहाँ बहुत सारे प्लेट लगाए हुए हैं। दो प्लेट में बिरियानी दिख रही हैं। सामने में थम्सअप की बोटल और एक --

बाजु मे और एक पेपर है।

सामने में राधा किशन की मूर्ति रखी गई है। उसके ऊपर बोत सारे हार लगाए गए हैं। उनके पीछे में मोर के पंख लगाए गए हैं।